अ सामने में एक रूम के अंदर ये दिख रहा है।

एक बड़ा सा टाइप का कुछ लगा हुआ है जहा पर --

ये एक का अ पिक्चर है।

और अ यहा पर कुछ आदमी अ से जाते हुए दिख रहे है।

और बहुत सुंदर सा झूमर टंगा हुआ है।

अ बोट टाइप का दिख रहा है जहां पर बोट के ऊपर बहोत सारे--

अह ये उस साइड में एक बिल्डिंग टाइप का बना हुआ है।

और लाइन्स के साथ खड़ी है अपने बारी का इंतजार में की कब इनकी बारी आए और ए अपना काम करे ।

और यहां पर स्टेज में दो तीन लड़के दिख रहे है स्टेज को सजाया जा रहा हैं।

अ ये जो ग्लास का जज आ --

एक नदी टाइप का कुछ दिख रहा है यहा पर कुछ भेसे नही में नहा रही है।

सामने में ये एक स्टेडियम टाइप का कुछ रहा है के एक यहाँ पर एक --

और यहा पर बहोत सारे और भी कुच्छ कुछ सामान है बोतल वोतल है।

ये एक दुकान टाइप का है बहुत सारी टंगी हुई है यहाँ पे।

ये एक स्टोर का फोटो लगता है यहाँपे बोहोत सारे सामान रखे हुए है और--

सामने में एक अः बिल्डिंग टाइप का बना हुआ है सफ़ेद रंग का बिल्डिंग टाइप का--